गार्डन दिख रहा है वहाँ पर गोल गोल को बना हुआ है उसमे एक पुतला बना हुआ है जिसमे पानी गिर रहा है।

केले का पेड़ दिख रहा है नारियल का पेड़ है और लाइट के खंभे गड़े हुए हैं बादल दिख रहा--

यहाँ पर टेबल रखी हुई है उसमे मछली रखी हुई है जेंट्स दिख रहे है बहोत सारे लेडिस बैठी हुई है दो--